ये कोई सब्जी मंडी के जैसा लग रहा हैं जहाँ पे बहुत सारा सब्जी रखा हुआ हैं एकदम सब्जी सब देख के लग रहा हैं एकदम ताजा-ताजा सब्जी हैं ।

प्रोग्राम और उम् दो लड़की और दो लड़का डांस कर रहे हैं और पीछे बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ हैं होस्टल में --

लग रहा अभी लाया हो लाया होगा शायद सब्जी सब को अब बहुत सारा सब्जी लाया हुआ है कोभी है गाजर है टमाटर है बहुत कुछ सब्जी--

ये कोई बस स्टैंड के जैसा लग रहा हैं जहाँ पे लाइन - लाइन तीन चार ठो बस खड़ा हैं और बहोत सारा आदमी --

ये कोई तलाब के जैसा लग रहा हैं लग रहा हैं सुबह को जब सूरज उगा होगा तब यह पिक्चर लिया होगा एकदम पानी में सूरज का--